अन्यथा एक पीछे मे टेबुल भी है।

जिसके बनावट सीमेंट गिट्टी द्वारा की गई है।

और पीछे में दो दोकान भी दिखाई दे रही है।

और इसके छत में बहोत सारे मोटे मोटे तार पास किए गए हैं।

और यहां पे गमला में कुछ पौधे भी लगाए गए हैं।

पीछे में एक बहोत बड़ा पेड़ भी है।

और उस अपार्टमेंट में बहुत सारे खिड़कियां भी है।

और इस अपार्टमेंट का कलर व्हाइट और पीला है।

और पीछे में बहुत सारे पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे टेडी बियर भी रखा गया है।

और इसके फर्श सीमेंट द्वारा बनाए गए हैं।

एक फैन भी है जो वाइट कलर के हैं।

अन्यथा कुछ दरवाजे भी दिख रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे सब्जियां लगाई गई है।

तथा एक बहुत बड़ा पेड़ भी दिख रही है।

और बहुत सारे किनारे पे ठेला भी लगाए गए हैं।

यह एक रोड का दृश्य है जिसके बगल में बहुत सारे बिल्डिंग बनाई गई हैं।

तथा एक टेबल भी रखी गई है जो प्लास्टिक द्वारा बनाई गई है।

और एक लाइट भी लगाई गई है जो व्हाइट कलर के है।